वहां पीछे भी हमे दिख रहा है की कुछ टेबल पे जो है टेबल कुर्सियों पे आदमी बैठे हुए हैं साथ में।

इस पे जो है बहुत सारी मूर्तियां एक्सपेंसिव मूर्तियां जो है रखी हुई है।

यहां पे बहोत सारे लोग जो हैं खड़े हुए हैं जहा एक ऑटो दिखाई दे रहा है --

यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक जो है घर है | इसका जो छत है वह टिन का दिखाई दे रहा है | साथ ही यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ा हुआ है |

कट्टे जैसा दिखाई दे रहा है कि गन जो है बहोत सारी यहां पर लंबी-लंबी रखी हुई हैं ब्लैक कलर में।

जिसपे रंग-बिरंगे जो है बलूंस लगे हुए हैं साथ ही यहां पे जो है बहुत सारी गर्ल्स है जो की डांस कर रही हैं।

दूर दूर से हमें इसमें एक गाड़ी जो है खड़ी हुई दिखाई दे रही है साथ ही यहाँ पीछे हमें कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

जिसमे चार जो है कुछ जला हुआ है जिसमे दीपक जैसा लम्बा लम्बा दिख रहा है जिसमे आग जो है लगी हुई है | उसका जो है लाल रोशनी जो दीवाल पे पड़ रहा है साइड में इसका कुछ छोटा छोटा पेड़ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे एक टंकी जैसा बना हुआ है जिसके उपर वो एक बहुत बड़ा लोहे का टॉवर बना हुआ है जहाँ पे बिजली के --

घर पे हमे दिखाई दे रहा है की यह एक जो है ग्रॉउंड है।